सभी चाबियां एक के बॉक्स के अंदर रखी गई है पास में कुछ कागज के बॉक्सेस रखे हैं उनके अंदर गाड़ियों के कुछ --

और सामने एक गाड़ी भी दिखाई दे रही--

अलग अलग तरह की कपड़े रखे हैं सभी जेंट्स के सूट है कुछ बॉक्सेस में बंद है।

आसपास कुछ औजार रखे हुए हैं ए व्यक्ति कार का बोनट खोले हुए खड़ा है।

यहां पर तीन डांडिया रखी है इससे ये खेल खेला जाएगा टेबिल बोल है और यहां पर कुछ कुर्सियां भी राखी गई है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जो बड़े बड़े पत्थरों पर ये किसी पेड़ पर हाय लगा नही अपनी तस्वीर खींचा रहा है।

फर्श हरे और लाल कलर में किया गया है।

ये बिल्डिंग की किले की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं ऊपर दीवारों के ऊपर कुछ सजावटें भी की गई है।

कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं एक बैग भी यहां इस यहां पर खड़ा है कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

अलग अलग तरह के लिखे है कई पत्ते हरे हैं और कई पी पीले हो रखे हैं बहुत सारे छोटी सी जगह में लगाई गई हैं।

ये किसी बच्चों के पुस्तक या बच्चों के स्कूल के सामान रखे रखे गए हैं बहुत सारी बुकें रखे गई हैं कुछ --

यह फोटो ये किसी नदी के बांध के पास की है यहां पर एक पुल बना हुआ है और इसके नीचे बांध है।